चार्रो तरफ लोग है और दरवाजे हैं और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और डाई करवा रहे है बाल को छटवा रहे हैं और--

बोहोत सारी सुंदर-सुंदर साड़ी है और रेड कलर है वाइट कलर है।